इस दर्सय मे हमे एक मच्छी मंडी दिखाई पड़ रही है यहा पर हम बहुत सारी मछली की दुकान दिखाई दे रहे है यहा पे मच्छलिया बहुत तरह तरह की नज़र आ रही है सारी की--

यह एक हॉस्पिटल की लग रही है हालाकी ये तस्वीर बाहर से ली गई है यहा पर हमे एक ऑटो लगा हुआ नजर या रहा है साथ ही साथ कई पेड़ भी नज़र आ रहे है।

इस दर्सय मे हमे एक हॉस्पिटल का पोस्टर लगा हुआ नज़र आ रहा है जिसपे इसका नाम लिखा हुआ है।

ओर दूर देखने पर हमे खिड़की दिखाई पड़ रहा है बेड पर हमे बेडशीट दिख रहा है।